यहाँ पे कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं यह दुकान --

यह एक चर्च की तस्वीर है जहाँ बहुत सारे सामने चर्च के फादर बैठे हुए हैं पीछे बहुत सारी बच्चियाँ सफ़ेद कपड़े में है पीछे क्रोस बना हुआ है।

यह एक चर्च की तस्वीर है जिसके ऊपर में एक क्रोस बना हुआ हैं चर्च की छत पे लाल है और बिल्डिंग का कलर भूरे रंग का हैं।